लोहा का गेट्स भी लगा हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है।

और उसके लाइब्रेरी के नीचे घर भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत बड़े-बड़े हैं और उसमें टॉवर्स लगे हैं पेड़-पौधे लगे हैं और यह --

और यहाँ पर वाइट कलर के कपड़े पहने झंडा ले कर के डांस करने का प्रयास कर रहे हैं।

यहां पे हमें एक मुर्गी फॉर्म जैसे दिखाई दे रहा है उसमे दो गाड़िया रखी हुई है।

वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है जोकि वाइट कलर से पेंट किया हुआ है और उस स्विमिंग पूल में बोहोत पानी भी कम दिखाई दे रहा है।

और वह स्कूल हल्का पिंक कलर में पेंट किया है और ब्लू कलर से बॉर्डर दिया हुआ दिखाई दे रहा है।